और दुकान के बाहर एक एस_बी_आई बैंक बना हुआ है और भी बहुत सारी दुकाने--

यहां पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है।

हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ है जिला रक्षा सेवा अप्लाई --

सामने एक ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है।

और पैंट भी लगा हुआ है फोन के अंदर--

और बहोत सारे न्यूजपेपर भी रखे हुए है किताबे भी पड़ी हुई हैं यहां पे।